इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर सेल्स नाम का बोर्ड लगा हुआ है और इधर साइड में --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

इस तस्वीर मैं देख पा रहा हूं मुझे एक बड़ बहोत ही बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे ए_सी भी हैं और इसमें फेस उपर की तरफ देखें --

इस तस्वीर में मुझे हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें अलमारी रखी हुई है और ये ये एक जो कि कूलर भी रखा दिखाई दे रहा है।

ये एक लाइब्रेरी लग रही है जो की इसमें लाइटें ही लाइटें लगी हुई हैं और एक पर्दा भी बीच-बीच में लगा हुआ है ये इसमें कम से कम सौ बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं।

पैरों को हाथ में लेके बैठे दिखाई दे रहे हैं ये एक बहुत बड़ा हॉल है यहां एक्सरसाइज और योग की जाती है।

और इसमें सेटअप किया गया है जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं जो की एक--

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है कि पीछे की तरफ दीवार पर कारों के पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें इस तस्वीर में मुझे दो कारें दिखाई दे रही हैं जिसमें --

देवी देवताओं की फोटो भी कोने में लगाई गई है और ऑनलाइन पे करने के लिए इसके अंदर भी लगाए गए हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये एक बीकानेर का जंक्शन लग रहा है जो कि बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है और बाहर की तरफ में कारें भी दिखाई दे रही हैं और --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे ये कूलर पंखों की दुकान नजर आ रही है और इसमें एक पंखा चल भी रहा है ये एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान लग रही है और जिसमें सभी सामान --

और ये है बहुत ही प्रसिद्ध दुकान लग रही है।

सामान हो सकते हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी जो कि चीजें दिखाई दे रही हैं ये एक अलग ही प्रकार की कलाकृति बनाई है जो कि बनी हुई है।